एक एक ग्राउंड है। उसके उसमे एक झूला लगा हुआ है झुले में व्हाइट और ब्लैक कलर की पट्टिया हैं और --

और मिट्टी भी दिखाई दे रही है एक खंभा भी दिखाई दे रहा है कुछ इन्सान भी दिखाई दे रहे है इसमें।

फूल वाड़े पेड़ लगे हुए हैं जो और गार्डन में झूले भी हैं। बच्चे झूल भी रहे हैं और पेरेट्स झुला रहे हैं और उनके पीछे बड़े-बड़े पेड़ है।